एक चार पहिए की गाड़ी दिख रही है जिसका रंग सफेद है।

एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं किनकी पत्तियों का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग से बंधन बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बैनर पर वाशिंग मशीन की फोटो दिखाई दे रही है।

एक झरना दिखाई दे रहा है उस झरने में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति चट्टान पे बैठा हुआ है जो लाल रंग की टी_शर्ट पहने हुए है।

सफेद रंग की चार पहिए की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक सीलिंग दिखाई दे रही है इसमें सफेद रंग की लाइटें लगी हुई हैं।

बहोत सारी लाइटे दिख रही हैं स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं।

इसमें एक सीलिंग है सीलिंग में बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इसमें बहोत सारी लाल रंग की कॉपियां दिख रही है।

एक आदमी दिख रहा है जो अपने हाथ में ड्रिल मशीन लेते हुए दिखाई दे रहा है वह जमीन में छेद करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह राधा जी कृष्ण भगवान की मूर्ति है।

शटर दिख रही है सफेद रंग की सीलिंग दिख रही है जिसमें पंखा लगा हुआ है।